मुझे इस तस्वीर में एक आगे में एक चर्च का --

पक्का का मकान दिख रहा है और चारों तरफ त्रिपाल ढका हुआ है और बोरा भी ढका हुआ है लोग की सामने की ओर देख रहे हैं की लोक --

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा है गार्डन के ऊपर में --

और ऊपर मे एक पक्का का मकान दिख रहा हैं दोपहर का समय हैं।

और एक सी. सी. टी. वी. कैमरा दिख रहा हैं और छोटा-छोटा बल्ब भी जल रहा हैं और नीचे मे टाइल्स भी लगा हुआ हैं औ व्यक्ति सामने की ओर आ रहा हैं।

सफेद कलर का पोताया गया है और नीचे में उखड़ भी गया हैं।

एक ठॊ बल्फ़ भी जर रहे है नीचे में टाइल्स लगा है और एक ठो लोहे का बेंच और कुर्सी --

और उसके आगे मे एक पक्का का मकान दिख रहे हैं और आम का पेड़ दो तीन ठो दिख रहे हैं और आगे मे एक ठ झाड़ी भी दिख रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक पक्के का मकान दिख रहा है और उसके आगे में इशू मसी का --

रात का समय हो और उसके आगे में एक ठो ब्रेड है और पानी का बोतल और डिस --